और बहोत सारे व्रक्ष दिख रहे है ग्रीन कलर के और आस-पास कुछ घर दिख रहा है और आसमान दिख रहा है वाइट और स्लेटी और पर्पल कलर का और--

कमरा दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है और कांच में कुछ बर्तन रखे हुए एक गंजी रखी है एक और बड़ी सी गंजी रखी है।

पिक्चर में एक पहाड़ दिख रहा है दो चार पत्थर दिख रहा है और वह सलेटी कलर के हैं कुछ वृक्ष दिख रहे हैं और अ कुछ अ पत्ते दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और कुछ वृक्ष दिख रहें हैं वह ग्रे डार्क ग्रीन हैं और कुछ कम ग्रीन दिख रहें हैं और वाइट कलर का कुछ दिख रहा है।

ये कुछ वृक्ष दिख रही है वह ग्रीन कलर के है और कुछ कुछ झोपड़ी दिख रही है जो येल्लो कलर की है व्हाइट कलर के है और कुछ शॉप दिख रही है|

बहुत सारी बाइक रखी हुई है एक साइकिल भी रखी हुई है और आसमान दिख रहा है पास वाली बिल्डिंग व्हाइट कलर की है।

और नीचे भी बौ बाउन्ड्री सी है उसके और अ अच्छी लग रही है मूर्ति।

पिक्चर मे एक तालाब दिख रहा है तालाब मे पानी दिख रहा है और आसमान दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का।

टैंकर खड़ा है जो के ब्लू कलर आसमानी कलर है और ब्लू कलर से भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है वो पेट्रोल वाला टैंकर है।

मे एक रेड कलर ऊपर पिंक है और ऊपर उससे ऊपर गोल्डन कलर का एक मंदिर है।